और खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और खुला आसमान भी दिखाई पर रहा है।

आसपास पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के बाहर तीन गाड़ियां भी दिखाई दे रहा है।

थे में बहुत सारे गाड़ी और ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।

दीवार में ए_सी लगा हुआ है।

एक बड़ा सा दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे केक भी बनाया हुआ रखा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारे पंखा भी लटका हुआ है।

ट्यूबलाइट भी लगा हुआ है।

ऊपर में ए_सी भी लगा हुआ है।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

और फिल्टर भी दिखाई दे रहा है।

पास में ही हेयर ऑयल भी रखा हुआ है।

मुझे इस दृश्य में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे इस दृश्य में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

बिल्डिंग के उस पार पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।